ये दुकान ब्लू कलर की पुती हुई है और साइड में एक घर है जो क्रीम कलर का है जिसके बाहर कुछ सीढिया भी रखी हुई है।

इस चित्र में हमें एक सरकारी कार्यालय नज़र आ रहा है ये कार्यालय की बिल्डिंग है ये बिल्डिंग थोड़ी सी जर्जर अवस्था में है ये जो पेंट है वो भी काफी ख़राब हुआ पड़ा है।

यह किसी कार्यालय की तस्वीर है जहां पर हमें टेबल्स नजर आ रही है चेयर नजर आ रही है एक अलमारी लगी हुई है ।

किसी सेवा केंद्र का ऑफिस है जहां पर अंदर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है यहां पर चेयर भी लगी हुई है और अंदर एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर छोटा-छोटा कुछ लिखा हुआ है।